रूम्स है रूम्स के दरवाजे लगे हुए हैं।

रूम में एक बेड है दो चेयर है बगल में भी एक बेड है।

यहां बैंच टेबल कुर्सी लगे हुए है।

इस इमेज में एक खुला मैदान है उसके अंदर एक--